यह एक साइकिल रखी हुई है उसके आस पास बाटी भी रखी हुई हैं हम साइकिल से बाज़ार जाते हैं।

ये बहोत ही सुंदर बच्चे लग रहे हैं एक ड्रेस में और ऐसा दृश्य देखके हमें बहोत अच्छा लगता है। हम भी ये स्कूल में जाते हैं और अपनी ड्रेस पहनकर सभी बच्चे आते हैं।

अच्छा सी दुकान दिख खुली हुई है और पास में बहोत सी मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है और बहोत लोग एक ही दुकान पर बहोत ज्यादा इकट्ठे रूप मे खड़े हुए हैं।

की दुकान है उसके आस पास दो मोटरसाइकिल खड़ी हुईं हैं |

पर प्लेम्बर का काम चल रहा है लोग सरियों बांध रहे हैं और यहाँ पर पिलर भरे जा रहे हैं।